इस इमेज में एक व्यक्ति अपने हाथ पर --

का ए.टी.एम. है और --

फूल या ड्राई क्लीनेस --

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया का ए.टी.एम. --

ब्लू है और बड़ी स्वच्छ सीट है और रंग-बिरंगे बढ़िया पर्दे है। ब्लू कलर के और बिलकुल खाली बस --

यहाँ पर ड्राई फ्रूट भोजन सामग्री भी उपलब्ध है।

दे रहा है और दो गेट है। गेट बंध है। एक गेट खुला हुआ है।